ये भी मछलियों की शॉप हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हैं कुछ ख़रीद रही हैं और कुछ लोग बैठे हुए हैं के लिए।

चार एक ट्रक दिख रहे हैं और दो तीन जेंट्स लोग हैं जो खड़े हुए हैं।

और उपर भी कुछ मतलब डबल मंजिल है और पेड़ लगे हुए हैं।

इसपे बहोत ज्यादा भीड़ है और कुछ बुक्स मतलब कैलंडर वगेरा टांगे दिख रहे है बुक्स दिख रही है और बहोत ही ज्यादा भीड़ है।